यहाँ पर बहोत सारे लोग अस्नान करते देखने को मिल रहे हैं।

और छोटे छोटे पौधे भी देखने को मिल रहा है।

सामने एक बड़ा मकान देखने को मिल रहा है और बहुत सारे पेड़ भी देखने को मिल रही है।

बहोत ही अच्छा देखने को मिल रहे हरे भरे--

और लाइट्स का रोशनी भी आ रही है यहाँ पे और एक आदमी भी मिरर के में देखने को मिल रहा है।

और एक रोड भी बना हुआ है और रोड के दोनों साइड हरे हरे--

और मर्द भी अ फोटो खींचव खींचवा रहे हैं और एक कार भी देखने को मिल रही है और एक कार अंदर में भी है।

सामने एक बिल्डिंग दिख रहा है जोकि टी_वी_एस का शोरूम जैसा दिख रहा है।

और कुछ जे_सी_ बी भी देखने को मिल रहा है और एक छोटा सा फ़ील्ड भी है जिसमें हरे भरे घास नज़र आ रहे हैं।

हमने कुछ अलवेस्टर का मकान देखने को मिल रहा है और यहाँ पे ये कुछ चार छके भी देखने को मिल रहे है।

लाइन भी देखने को मिल रहा है और बाहर में गार्डन भी बना हुआ है जिसमें कुछ चेयर भी देखने को मिल रहा है।

और यहां पर कुछ झूले भी देखने को मिल रहे हैं और बहोत सारे--

और यहा कई सारे प्रकार के ए सी देखने को मिल रहा है और एक--

और कुछ घरे भी है और एक छोटा सा मैदान भी देखने को मिल रहा है ।

यहाँ पे एक औरत बैठी हुई सब्जी बेचती हुई नज़र आ रही है और एक औरत जाती हुई नज़र आ रही है रोड पे।

हमें एक हॉल दिख रहा है। यहां पर कई प्रकार के मशीन देखने को मिल रही हैं।

और केक के कई सारे बैग भी देखने को मिल रही है।

और एक बड़ा सा पेड़ भी सुखा सा नज़र आ रहा है और एक --

सामने एक मकान दिख रहा है जिसके ऊपर वर्कर सब काम कर रहे है।